यह एक रोहतक का कॉलेज है जहां पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है।

और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो हाथ में थेला लिया हुआ है।

और बहुत ही अच्छी तरीके से यह बनाया गया है यहां पे लाइटें भी लगी हुई है पंखे भी लगे हुए हैं।

और कुछ स्कूटी भी दिखाई दे रही है और कुछ बाईके भी दिखाई दे रही है और एक ट्रक भी खड़ा हुआ है जो बहोत बड़ा --

और ये त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा बनाया हुआ है।

और एक ये उसपे बनाई गई है पेहले पत्थर की बनाई हुई है।

ये शिव जी भगवानों में सबसे बड़े भगवान है जो बहोत अच्छे दिखाई दे रहे हैं।

और दूध की चाय भी बना सकते हैं और टेंपो से हम ई रिक्शा भी दो रखते हैं।

और जिम की बहोत सारी मशीने भी दिखाई दे रही है और ये यहाँ पे जिम करने के लिए आया हुआ है ये शाम का टाइम हैं।

जिम हमेशा शाम के टाइम करनी चाहिए वो बॉडी को बहोत अच्छा मेंटेन र--

यहां पर दो तोते दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं एक पिंजरे में और उनके पास एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

दो लड़के हैं एक औरत है और एक आदमी ने हेलीमेट भी लगाया हुआ है।

यह एक फूल की दुकान है जहां पर बहोत सारे फूल रखे हुए हैं पीले कलर के।

हरा भरा हुआ है आप कोई सा भी फूल यहां से ले जा सकते हैं।

ये एक भगवटी टाइल्स एंड है यहां पर आप टेल्स ले सकते है।

जैसे की टेल्थ बहोत ही अच्छा काम करती है यहां पर डो तीन लोग खड़े हुए है दो तीन लोग बैठे हुए है।

ये गैरेज में पड़ी हुई है और वहां दुर एक बाइक भी दिखाई दे रही हैं।

एक तो शिक्षा की देवी की पेंटिंग भी लगी हुई है भगत सिंह की लगी हुई है।

और इसका जो नाम है ये क्या नाम है देख रहे हैं आप हरिहर क्षेत्र--

ये एक स्टोर है स्टोर में बहुत सारी देख रहे हैं आप बोटले रखी हुई हैं।

और ऊपर बहुत सारी गणेश जी की मूर्ती भी है ये दोनों तरफ तो गणेश जी की मूर्ती बनाई गई हैं।

ये एक गाड़ी है ये ब्लैक कलर की गाड़ी है और बहोत ही अच्छी गाड़ी है इसका--

और एक एल_इ_डी भी लगी हुई है और काफी प्रकार की यहां पर मशीन भी लगी हुई है जिस पर आप जॉगिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी--

जो बैठी हुई है आपस में और कुछ लोग लेटे भी हुए हैं जो मजा ले रहे --

और एक चुस्की वाला भी नजर आ रहा है जिसके पास कोई लोग चुस्की लेने के लिए आ रहे हैं।

ये एक शॉप है जहां पर कुछ दवाइयां रखी हुई हैं जो समझ में नहीं आ रही है।

यह एक किड्स ए टू जेड की दुकान है जहां कंपलीट किड्स जॉन और गारमेंटस बेबी केयर प्रोडक्ट --

नजर आ रहा है जो अभी छोटा-छोटा नजर आ रहा है और पानी आप देख रहे हैं पानी की तरफ कोई--